सामने से कुछ आते हुए दिखाई दे रहें हैं सामने से रोशनी अंदर आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर काले कलर कुछ लगाई गई है।

ब्लेक कलर की शर्ट में आए हुए है सामने एक योगा टीचर है जो लोगो को योगा कराने का व अच्छे से सीखाने काम कर रही हैं।

यहाँ पर एक बड़ी सी चेयर दिखाई दे रही है जो की सूखने के लिए रखी हुई है अगल बगल और भी कुछ चेयर रखी हुई हैं।

यहाँ पर एक दूकान दिखाइ दे रही है जिसके पि-अंदर बहोत सारे कुछ लिक्विड के समान रखें हुए हैं सामने बाहर ग्लास लगी हुई है और नीचे बहोत सारे कुछ लगे हुए हैं।